जियोस का मंदिर है जहां पे बहोत सारे लोग खड़े हैं।

पानी की खड़ है जहां पे जरने से पानी निकल रहा है।

पानी झरने से भी नीचे उतर रहा है।